यह एक कैफ़े है इसके अंदर एक ए_सी लगी हुई है।

यह एक दुकान हैं जिसके आगे स्वाद राजस्थान का लिखा हुआ हैं।

जिसके आगे राजू डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप लिखा हुआ है।

इसके अंदर एक तार भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे गैलन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि पीले रंग के हैं।

यह एक बहुत बड़ी शॉप है इसके अंदर किराने का बहुत सारा सामान रखा गया है।

यह एक शॉप है इसके अंदर एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

एक आदमी एक टूटी हुई गाड़ी के पास बैठा है जोकि उसे रिपेयर --

यह एक ज्वेलर्स की दुकान है इसके अंदर बहुत सारे ज्वेलरी है।

और साइड में एक जूते की शॉप है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जुती है इसके डेकोरेशन --

और इस आर्ट सेंटर का रंग पीला है और रेड भी है।

और एक पुजारी मोटा सा खड़ा है उसने लाल कलर की धोती बांध रखी है।

और आस पास में मैगी के पाउच पड़े है और क्लिनिक प्लस और सांसेलिक शैंपू भी दिखाई दे रहे है।

और एक लकड़ी भी है इसके पास।

और एक जंगला है उसके अंदर से रोशनी आ रही है और एक ब्लैक बोर्ड भी है।

यह एक बड़ा ग्राउंड है जिसके आसपास में बहुत सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।